अह सभी टेबल पे जो है टिशू पेपर और बाकी सामग्री रखी गई है।

फोटो जो है ये किसी प्लेट में रखी अ रोटी की दिखाई दे रही है जो आलू पराठा दिखाई दे रहा है।

मकान जो है वहां पे बनाए जा रहा है।

फोटो के पीछे साइड में बड़ा सा नीले कलर में आकाश दिखाई दे रहा है और साइड में जो है हरे भरे--